सामने की तरफ दो आदमी खड़े होकर पोज देकर फोटो खींचा रहे हैं। नीचे एक रेड कलर की कारपेट बिछी हुई है। गेट बहोत ही सुंदर लग रहा है।

यहाँ पर कुछ घासें भी लगी हुई हैं। दूर दूर तक पेड़ नजर आ रहे हैं और एक सुंदर सी लेन नजर आ रही है। पानी का रंग नीला है। आसमान पूरा साफ है और नीला सुंदर नजर आ रहा है।